एक गेट बना है जहाँ पे कुछ घर दिख रहे है हमे कुछ लोग बैठे है कुछ खड़े है ब्लू कलर से--

यहाँ एक वेजिटेबल शॉप है जहाँ मुझे बहुत सारे वेजिटेबल दिख रहें हैं बनाना दिख रहें हैं फ्रूट्स भी दिख रहें हैं बनाना लहसुन गाजर प्याज आलू गोबी बेेंगन कुछ लोग दिख रहें हैं मुझे यहाँ पे।

ये फिश मार्किट है जहाँ पर बहुत सारे फिशेस रखी है छोटी है कुछ बड़ी है।

हम्म ये एक सैलून है जहां मुझे एक कैंची दिख रही है कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे और रेड कलर से उसमें लिखा है कैमरे लगे है अंदर मुझे कुछ मशीन्स दिखाई दे रही है बाहर शटर है।

कुछ ऊपर बैठे हैं कुछ बस के अंदर हैं कुछ इसमें चढ़ रहे हैं बाइक्स दिख रही हैं लोग पैदल चल रहे हैं।

ये फ़ोटो एक नाइट की है गार्डन की जहां ग्रीन अ मेट डली है जहां केंडल्स और दिए जल रहे है अगरबत्ती जल रही है यहाँ पे।

अम्म यह एक मेले की फोटो है जहां पे लोग मेला घूमने आए है यहाँ पे बच्चों की कार्स दिख रही है मझे टेडी वाला बलून दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे गाड़ियाँ दिख रही हैं फेन्स दिख रहे हैं साइकल्स दिख रही हैं बकेट दिख रही है स्टूल दिख रहे है।

लाइट है फेन है।

अ ग्रीन कलर रेड कलर व्हाइट कलर धोने मे बॉ प्लेट्स मे कलर्स रखे हुए है।

यहाँ पर देख रहें हैं लोग पटाखे फोड़ रहें हैं गाड़ियाँ रखी हैं थोड़े बहुत लाइटिंग्स लगी है गेट हैं गेट पर गोल-गोल फ्लॉवर टाइप दिख रहें हैं।

यहाँ मुझे एस.बी.आई. का बैंक दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

शटर ट्री कार बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोग यहाँ दिखाइ दे रहे है बाइक्स एक्टिवा रखी हुई हैं यहाँ पे।

यहां पे मुझे बहुत सारे बैलून्स दिखाई दे रहे हैबच्चेदिखाई दे रहे है कुछ बड़े दिखाई दे रहे है कुछ सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहे है।

स्टार्स कागे है ब्लू और व्हाइट परदो से डेकरैट किया गया है।

स्टेज बनाया गया है बोहोत बच्चे क्रिसमस ट्री क्रिसमस केप लगाए है सेंटा की --

वाइट कलर की वोल वाइट और रेड कलर की वोल हैं फैन हैं।

जैसे उनको गाइड कर रही है देख रही है।